भी है बड़े-बड़े ऊपर में भी आदमी बैठा हुआ है।

बरांडा भी है बहुत ही अच्छा है बहुत सुंदर--

दुर्गा मां का मूर्ति है ।

इतना ऊंचा में बैंक हैसीढ़ी--

अच्छा होता है बहुत ही बढ़िया होता --

पेड़ भी है बहुत अच्छा बहुत सुंदर है ये पेड़ पौधे।

कितना अच्छा से सजाया है यह पांचों कप।

छोटा सा बिल्डिंग है कपड़ा सुखाया हुआ हैं।

यहां पर लोग फ्री इलाज कराते हैं।

बहुत ही सुंदर है बहुत ही अच्छा है देखने में लाइट पिंक ।--